यहां पे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बहोत बड़ा मैदान है जहां पे कुछ लोग योगासन करने बैठे हुए हैं।

बिल्डिंग के बीच बीच में जो रास्ता है वहां बीचो बीच एक--

यहां पे बहोत सारे लाइटे भी दिख रही हैं।